यहां हमें एक मशीन दिखाई दे रही है।

वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मशीन में कुछ डाल रहे हैं।

यहा हमें एक बोर्ड दिख रहा हैं।

जिस पर एक कंकाल दिख रहा है।

यहां हमें एक स्टेज दिख रहा है।

स्टेज बहुत ही प्यारा सजा हुआ है।

एक ऊपर कांच दिख रहा है।

पीले और औरेंज कलर के फुगे नजर आ रहे है।

यहां हमें एक कांच की ऑफिस दिख रही है।

बाहर एक पौधा लगा हुआ--

जो खड़ा हुआ है उसने जूते पहने हुए हैं।

काउंटर के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहां हमें एक पंखा दिख रहा है।

एक लाल कलर में सांवरिया लिखा हुआ--

नीचे ऑरेंज कलर की कुर्सियां रखी हुई है।